और दो आदमी लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं और तत किनारे पे बहोत सारी रस्सी नजर आ रही हैं और एक ब्रिज जा रहा है जो बहुत ही प्यारा बनाया गया --

बाहर एक लकड़ी का कुछ तो बना हुआ नजर आ रहा है और एक बोहत बड़ा मोटा सा--

ऊपर बहुत सारी लाइट लगी हुई है और एक फेन लगा हुआ है| पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है| एक ए_सी लगा हुआ है| एक दरवाजा खुला हुआ दिख रहा है और ऊपर बहुत सारे फेन लगे हुए है और बहुत सारे छोटे-छोटे पोस्टर लगे हुए हैं।

यहाँ पे एक कार्टून रखा हुआ है कार्टून के अंदर छोटे-छोटे बड़ी-बड़ी हर प्रकार की मच्छी रखी हुई है| नीचे एक आदमी बैठा हुआ है उसके पास पीले कलर का बोड़ा है उसने भी मच्छी रखी हुई है ।